ये बैडमिंटन खेल रहा है हॉकी टाइप का अलबेस्टर बहुत बड़ा ग्राउन्ड बना हा हुआ है।

एक कुर्सी है फंक्शन वक्शन में होता है शादी बीहा में उ वाला है साइड से बहुत सजावट है साइड साइड में।

दुगो औरत जा रही है पेड़-पौधा भी है साइड में दूर-दूर तक पहाड़ दिखाई देता है नीला आसमान दिखाई देता है खुला आसमान अच्छा दिख रहा है अच्छा है पेड़ भी है।

बढ़िया है। बढ़िया है दिखाई रहा है। हरा-भरा है। सोने के लिए है गद्दा है। बढ़िया है।